और पकोड़े हर एक चीज खाने को मिलती है यहां पर हर टाइम रश बना रहता है।

एक ही बंदा सफाई कर रहा है।

फसलों में गेहूं बीजा गया है।

बहुत ही सुंदर फंक्शन है बहुत ही निराला फंक्शन है।

हर एक विषय की होती है।

इन से बच्चे पढ़ाई करते हैं और अपने अपने डाउट क्लियर करते हैं।

कटिंग का काम एक आदमी कर रहा है।

दांतों का ऑपरेशन यहां पर करता हैं।

बहोत भीड़ है लोग फूलों की मलायें बनाती है लाल और संतरे--

लोहे की दुकान में बहोत सारा समान पड़ा है।

नर्सरी है। यहां पर बहोत ही सुंदर सुंदर--

लगा हुआ है बहोत से लोग यहां पर इवेंट में आ रहे हैं।